ओर किरायनी की दुकान है जिसमें यहां पर कुछ नमकीन के पैकेट्स रखे हैं।

और यहाँ पर एक चेयर रखी हुई है कुछ दो लेडीज है अंदर खड़ी हुई है एक डोरमेट पड़ा है।

और जिसके बाहर बहुत सारी बाइक और स्कूटीज खड़ी हुई है।

और यहां पे वाइट कलर के कुछ से उससे डिजाइन बनी हुई है यहां।

और एक विंडो अ रोशनदान लगा हुआ है अ जो की आ यहाँ पे जाली वाला --

कुछ एक मूर्ति है गुफा में एक मूर्ति रखी हुई है।

और कुछ बड़े यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है।

और चेयर्स पे कुछ लिखा हुआ है नंबर डले हुए हैं और कुछ स्टेयर लगी हुई है यहां पर।

आ रेड कलर की स्टेयर है जिनमें कुछ लाइट्स लगी हुई है और डिजिटल लाइट्स लगी हुई है।

यहाँ पर एक दूकान है और शॉप है जिसमे बच्चो के कपड़ो वगैरा है।

यहाँ पर एक ग्राउंड है ग्राउंड में बहुत सारे पाम ट्रीस लगे हुए है।

की लाइन से लगे हुए हैं और स्कूल का ग्राउंड है यहां पे और कुछ बच्चे खड़े हुए हैं।

और जो की एक बच्चा खड़ा है जो की बैग टाँग के खड़ा हुआ है रोड के साइड में--

जिनके पैर में चोट आई हुई है दूसरे पर्सन उनको देख रहे हैं पैर को।

और जिसमे यहाँ पर ओक आइस-क्रीम अ दूध और दही वगैर सभी चीज़े मिलती है क्रीम वगैर--

ह ये ए मिलती है यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कि खरीदने के लिए खड़े हुए हैं बाहर।

और चेयर ओर लगी हुई है एक बैनर लगा हुआ है बड़ा सा।

और दो-तीन लोग और खड़े हुए हैं और यहां --

और यहां बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं एक पत्थरों की चट्टानों से --

और जिसके ग्राउंड में आ टाइल्स वगैरह लगी हुई है ।

आ जो कि गोल्डन कलर का अ बना हुआ है और यहां पर फूलों के द्वारा डेकोरेट किया हुआ है एक --

बना मुँह है और यहाँ पर पेड़ मैदान पड़ा हुआ है कु--

यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है जिसमें कुछ स्लाइडेड लगी हुई है।